ये एक दुकान की तस्वीर है इस--

दीवारों को देख के लग रहा हैकि ये जगह काफी ज्यादा पुरानी है और--

यहाँ पर बहुत सारे अलग-अलग तरह के फूल भी हैऔर ये काफी ज्यादा बेहद--

तस्वीर को ऐसा देखकर लग रहा हैकि ये एक योगा करने की जगह है।

सोफा लगा हुआ है टेबल भी लगा हुआ है।